एक ट्रेन के जैसी पटरी के पहिए बने हुए हैं।

मैं यहां एक मंदिर के पास में हूं और मैं देख पा रही हूं मंदिर के अंदर काफी कुछ लाइटें जल रही हैं।

स्कूल में देख पा रही हूं कि कुछ--

टीचर खड़े हुए हैं कुछ बच्चे--

एक पानी की बोतल रखी है दो मग्घे रखे हैं।

सड़क भी दिखाई दे रही हैं।

एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति--

मैं यहां एक हॉस्पिटल के अंदर हूं।

बहोत सारी औरते दिखाई दे रही है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ--

मैं यहाँ एक ग्राउंड में बैठी हुई हूं ग्राउंड में --

कई मेजें पड़ी हुई है बहोत सारी कुर्सियाँ भी पड़ी हुई है जिन पे --

एक बोरी रखी हुई है।

सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।